तो जैसा कि आप देख सकते है कि ये एक जिम है और यहां पे लगभग पांच से छे लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं।

मारने की कोशिश करा और दूसरा बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है।

जो कि स्प्लेंडर बाइक चला रहा है देखने में लड़कियों के का बाल काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

ढलते सूरज की रोशनीया जब इस पेड़ पर पड़ रही है तो कितनी सुंदर लग रही है।

तो जैसा कि आप देख सकते है कि एक पार्क का दृश्य है जहां पे पार्क के बाहर मे काफी लंबे लंबे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे हैं।

ये फोटो सैमसंग के स्टोर का है यहां पर इनकी टैगलाइन है गिफ्ट एंड ग्रिप --